और फुल का पे पौधा है उसके सामने घर सब है।

के पीछे बहुत आदमी है और मिस्त्री भी है यहाँ पे चार पांच उम ट्रक भी है यहाँ सामने एक कैमरा है।

और मशीन है पेट्रोल पंप का इसके पीछे बहुत आदमी हैं और यहाँ पे एक कोदारी है।

पे बहोत दूर में बहोत सारे मंदिर हैं।

और बहुत सारे आदमी है यहाँ पे एक काले कलर की लंबी तार है यहां पे --

यहाँ पे बहुत कॉपी के दुकान अ है।

पेड़ है उसके ऊपर बच्चा चढ़ा हुआ है।

यहाँ पे एक चादर पे कार का दुकान हैं।

वहां पे नीले कलर का एक घर का पक्का है वहां पे एक रोड है।

खिड़की है ऊपर में पेड़ है वहां पे एक कार सप्पा है।

बहोत सारे टेबल है डी.जे. है दो आदमी है।

उसके बगल में छोटे-छोटे हरे उम्म घास-फूस है उसके नीचे भी बहुत उम उम छोटे-छोटे पत्ता है।